एक शादी है जिससे खूब अच्छा मरकरी लाइट बिजली बत्ती लगा हुआ है वहां पे बहोत सारे लोग हैं।

कोई चर्च है एक लड़का चर्च के आगे खड़ा है पिक्चर क्लिक करा रहा है चर्च बहुत अच्छी हैं।